पंडित जी बैठे हुए हैं और दूल्हा झुका हुआ है।

दरवाजे कांच के बनाए गए हैं जिस पर वेलकम लिखा हुआ है।

उधर रखें हुए सारे कपड़े नए हैं।

रंग बिरंगे गुब्बारे टंगे गए--

बैक में बहोत सारे अलग अलग तरह की चीजें रखी गई है।

यहां छट पर्व मनाया जा रहा है जहां बहोत सारी महिलाएं बैठी हुई--

यह एक बड़ा सा हॉल है जिसमें येलो कलर का पेंट लगाया गया है।